साइन बोर्ड भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में मुझे एक चेक पोस्ट भी नजर आ रहा है।

बिल्डिंग भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में मुझे एक फ्लाई ओवर भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे चिकन नजर आ रहा है चिकन को फाल से किया गया है।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

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर रात में ली गई है।

घर का कलर पिंक ग्रीन और वाइट है।

इस तस्वीर में मुझे बेंच और टेबल नजर आ रहा है इस तस्वीर में मुझे एक क्यू आर भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक वॉल क्लॉक भी नजर आ रहा है।

ये तस्वीर किसी डीलर शॉप की है इस तस्वीर में मुझे एक बिल्डिंग नजर आ रहा है।

बिल्डिंग पे लिखा हुआ है ए सी इ यू बी ।

इस तस्वीर में मुझे एक गेट भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे गणेश जी का मूर्ति भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में सभी आदमी ने टोपी पहना हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे बैलून भी दिखाई दे रहा है बैलून का कलर व्हाइट और ब्लू है।

इस तस्वीर में मुझे बोहोत सारे बिल्डिंग भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में मुझे कुछ पेड़ पौधे भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे पहाड़ भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहा है।